नदी के चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा भी है।

के बीच में एक लंबा सा झाड़ दिखाई दे रहा है।

चित्र में पहाड़ में कई घर दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

लॉरी के सामने दो जेंट्स भी खड़ा हुआ हैं।

बिल्डिंग के सामने बाइक दो चार खड़ी है।

व्हाइट कलर की एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है।

इस चित्र में नीचे की तरफ टाइल्स दिखाई दे रहा है।

टाइल्स का कलर ब्राउन और आइसक्रीम कलर का देखने को मिल रहा है।

होटल के दीवाल पे एक नो स्मोकिंग का बोर्ड भी लगा है।

रूम के अंदर एक कंप्रेशर देखने को मिल रहा है जिसका कलर लाल है।

मस्जिद के आजू बाजू मे एक माइक भी दिखाई दे रहा --